बरगछ पेड़ के पास कोई बच्चा पानी पी रहा है और गर्मी के इन्जॉय कर रहा है ठंडा मे बेठ कर खड़ा हो कर के और यहाँ पे बोहोत अच्छा सीन दिखने को लग रहा है|

बहुत अच्छा कारीगर द्वारा बनाया गया है पीछे पोखरा भी लौक रहा है जिसमें पानी भरा हुआ है बोतल मे भी पानी पी रहा है बच्चा भी बहुत अच्छा कपड़ा पेहना है घड़ी भी बंधा है।

स्टूडेंट इनफॉरमेशन सेंटर स्कूल है जो कि अवस्थित पटना में है और इस स्कूल में बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे पढ़ते हैं इसका फीस भी बहुत कम है।

और मुर्गी बहुत अच्छे बहुत सुंदर दिख रही है जो कि देहाती मुर्गी के नाम से हमलोग जानते हैं इसका मीट बहुत अच्छा होता है और इसे दाना भी खिलाया जाता है और कीड़े मकोड़े भी खाते हैं।